सामने बाहर कार खड़ी हुयी है जिसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट लगी हुयी है। एक वाइट कलर की कार है। ब्लैक कलर का छोटा-सा झंडा लगा है। ब्लू कलर से --

एक रोड रहा है जिसके ऊपर एक ओटो और रिक्षा दिख रहा है जो ग्रीन और यल्लो कलर का है उसके अंदर एक आदमी बेठा हुवा है।

छत ढालने वाली मशीन लगी हुई है और सामने एक मशीने जिसके अंदर सीमेंट रेत पानी डाल के कंक्रीट बनाया जाता है और छत पे एक आदमी दिख रहा है तार दिख रही है।